येलो और ब्लैक है और गुब्बारे लगे हुए हैं जो की ब्लू और येलो है।

और नीचे कारपेट बिछा हुआ है और कुर्सियाँ रखी हुई हैं।

और पेड़ दिख रहे हैं बाइक दिख रही हैं उप महिला है। फल-फ्रूट लेकर आई हुई है जो कि --

और यहाँ पर एक अंक जेंट्स खड़ा हुआ है और --

पुरुष और दो पुरुष उम बहुत सारे पुरुष दिख रहे हैं और यहाँ पर एक खम्भा है जिसके ऊपर बहुत सारी डोरियाँ --

नीली खलर की दिख रही जो कि बहुत प्यारी दिख रही और भोत बड़ी नदी है और यहाँ --

रेत पड़ी हुई है और बिल्डिंगें दिख रही हैं गर दिख रहे हैं पेड़ दिख रहे हैं।

यहाँ पर ऐरोप्लेन दिख रही है जो कि एरोप्लेन बहुत बड़ी है और यहाँ पर जेंट्स महिला --

यहाँ पर ग्राउंड है और यहाँ पर कुछ बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं झूला झूल रहे हैं स्लिप हो रहे हैं ।